ऊपर अन्दर का पर्यावरण या फिर वातावरण या फिर--

सजावट बहुत ही अच्छा है यहां पे बहुत ही अच्छा लाइटिंग का उपयोग किया गया है वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है जो कि--

यह एक गुंबद या फिर मुसलमान भाइयों का मस्जिद जैसा लग रहा है।

वह बहोत ही अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि लोगों को आशा आश्रित कर रहा है वह --

यह एक कुतुब मीनार जैसे स्तंभ बना हुआ है वह एक आदमी एक साइकिल पर--

यह एक रेस्टोरेंट लग जैसा लग रहा है यहां पे--

चौबीस पचिश छब्बीस सताइश अठ्ठाइस उन्तीस तीस एकत्तीस बत्त --

व्यक्ति खरा हुआ है जिसमें ए एक महिला है यह बोट में सवार होने की

व यहां से सभी जगह बेचे या डाक घर से बेचे जाते हैं।

ये वायर बहुत व्हाइट कलर का है।

लाइट लगा हुआ है या बहोत ही अच्छा बैकग्राउंड लगा हुआ है।

वह बहुत ही अच्छा साफ सुथरा जगह है।

यहां पे लोग फोटोकीओपी के लिए अधिकतर आते रहते हैं।

टाइम पास के लिए ये जगह बहोत ही बेहतर है जिससे लोगों का आवागमन बना जाता है।

सभी को दे रहे हैं कि किसी भी।

यहां पे किसी भी प्रकार का प्रदूषण हुआ--

यह एक बहोत ही सुंदर सा गार्डन या बगीचा है जहां पे लोगों का आवागमन बना रहता है।